बच्चों के कपड़े है और भी बहुत सारे शूट्स दिख रहे हैं मुझे।

मुझे पिलर्स दिख रहे है जो कि अभी भरे नहीं है।

और इनके पीछे रेत का और बजरी का बहुत बड़े बड़े ढेर है और दो गाड़ियां मुझे दिख रही है।

यहां पर लिखा है चौबिहार ए_टी_एम नो यह एक ए_टी_एम --

और कुछ फूल इधर उधर गिरे हुए हैं बिखरे हुए हैं।

यह मुझे एक बेडरूम दिख रहा है जहां पर एक बेड लगा हुआ है और बेड के साथ में ड्रॉवर लगा हुआ है ड्रॉवर के ऊपर जो है --

यहा पर लैंप लगे हुए बहुत अच्छे तरीके से और लाइटिंग जो है येलो कलर की की है दीवार मे जो है ऊपर--

क्वालिटी तो मुझे कुछ खास लगी नहीं इनकी चलो जो भी है पर लड़कियों के जूते जो बहोत अच्छे है।

यहां मुझे एक अ रोड दिख रही है और--

यहां एक हॉस्पिटल है हिमाचल हिमाचल हॉस्पिटल ऑफ मेंटल हेल्थ एंड --

और यहां पर फल रखे गए हैं। अनार आम केले रखे गए हैं।

बंद किया गया मतलब पूरी तरह से क्लोज नहीं है बट बंद है गेट और इसके सामने एक गाड़ी भी लगी हुई है।

सिक्सटी थ्री रूपीस के और मैगी के पैकेट्स जो है एटी टू रूपीस के बताए जा रहे है।